टेंपो में एक आदमी व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर कुछ रिपेयरिंग कर रहा है। उसके साथ में एक ब्लैक --

ये एक पार्किंग एरिया है बिल्डिंग का इसमें एक ब्लैक कलर की कार पार्क की गई है।

पर स्किल का उसका ग्रिल है और बहोत अंधेरा टाइप है यहां पर--

अंकल बाइक चला रहे हैं उसने लड़की ने औरेंज कलर का स्कार्फ पहना हुआ है।

ये एक ब्यूटी पार्लर है ब्यूटी पार्लर में हर मेकअप का सामान रखा हुआ है यहां पर एक स्टैंड है उस पर--

और एक बड़ासा मिरर है और वहां पर एक फोटो फ्रेम भी हैं।

और एक वैक्स मशीन रखी हुई है बहोत सारे आईशेड पेलेट यहां पर खुले रखे हुए हैं और यहां पर एक कर्टन भी है।

पीछे एक लाल कलर का टैंपू है उसके पास एक आदमी ठहरा हुआ है.

यहां पर दोपहर का समय है ज्यादा धूप नहीं है दूर साइड बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं.

यहां पर एक कैफे है कैफे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में.

और बहोत सारे लोग ठहरे हुए हैं कुछ औरतें नीचे जमीन पर बैठी हुई है।

यहां पर एक रूम है रूम के दीवार पर बहोत खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है।

और बहोत सारे छोटे छोटे डिब्बों में समान है यहां पर रखा हुआ और छोटे छोटे यहां पर टायर्स रखे हुए हैं।

और दूर भी एक पेड़ है उसके यात्रा पे एक पहाड़ है बड़ा सा और छोटा सा रास्ता यहां से जा रहा है।

इसमें कांच लगे हुए हैं और बाकी जो दीवार है वो ब्राउन कलर का है।

और इसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है बहुत बड़े और पिंजरे के बाहर एक काली टाकी है।

ये एक ब्रिज है ब्रिज के ऊपर एक हाईवे है हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है।

और ये शाम का समय है क्लाइमेट बहुत ठंडा है यहां पर अबर-अबर है बिल्कुल धूप नहीं है.

और एक बैग रखा हुआ है और छोटा सा मनी प्लांट है और यहां पर दस्ती रखी हुई है।

और एक पिक्चर लगाई हुई है पोस्टर टाइप चूज योर कॅरियर वाईजली बोलकर--

ये एक स्कूल है और यहां पर बच्चे पेंटिंग कर रहे है क्राफ्ट कर रहे है बहोत सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए है।

गम की बॉटल्स यूज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं और इनके पीछे खिड़कियां हैं बहुत बड़े बड़े जाली के।